यह एक बस स्टैंड हैं जहाँ पर बोहोत सारी बसे खड़ी हुई हैं।

जिसमें बोहोत सारे फ्लोर हैं और उनमें बोहोत सारी बालकनी और खिड़कियाँ हैं।